बोहोत सारी हरी-हरी दिख रही है। पेड़-पौधे दिख रहे है बोहोत सारे खेत बना हुआ है। ऊपर आसमान दिख रहा है। लेडीज ऐ दिख रही है।

इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ी दिख रही है येलो और व्हाइट कलर पूत रहा है।

यहाँ पर एक वेयरहाउस दिख रहा है बहोत बड़ा रोड दिख रहा है।

खेत दिख रहा बोहोत बड़ा उसमे रास्ता जा रही है।

एक चादर का घर भी बना हुआ है और इधर घास मास वागेरह भी उग रहा है।

घर में काम चल रहा है घर बन रहा है पिलर वैगरह बन रहा है खिड़की वैगरह दिख रही है गेट वैगरह दिख रहे है।

दिख रहा है घर बना हुआ है यहां पर एक लेडिस भी दिख रही है यहां पर केले का पेड़ भी दिख रहा है।

खेत वगैरह भी दिख रहा है काफी लंबे-लंबे चौड़े-चौड़े खेतों में कुछ उग रहा हैं हरा-भरा सा काफी सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे है।

जो कि कुछ काम कर रही है उसमें खेत में बिजली के खंभे दिख रहे है उन पे से तार जा रहा है घर दिख रहे --